यह एक दुकान हैं आप इसमे जाके अंडा भी खा सकते हैं फिश भी खा सकते है रोटी भी यहां हैं यहां आपको कम से कम बजट में आप यहां भोजन कर सकते हैं और आपको --

यह एक कच्चा रस्ता है दोनो साइड से पेर है लंबा-लंबा पेर है। पेर के नीचे घास है जोकि पूरा हरा-भरा है उसके बगल में एक नदी है। ये एक गावं की तरफ एक रास्ता जाता है जोकि रोड पूरा गीला है भींगा हुआ है।